जो कि गोदाम से इस तस्वीर को खींचा गया है और इस माल गोदाम में कई सारे लोग काम करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर मे यह दिखाई दे रहा है यह एक जिम सेंटर है जिसका नाम प्रूडेंस हेल्थ जिम के नाम से है।

इस तस्वीर मे यह दिखाया जा रहा है की यह एक कोचिंग सेंटर का विज्ञापान है जिसका नाम द ए.एम. बैंक कोचिंग सेंटर है।

इस तस्वीर में जो दिखाया गया है यह एक आस्पताल के अंदर की तस्वीर है।

बगीचे के अंदर कई बड़े-छोटे पेड़-पौधे लगे हुए हैं और इस बगीचे के अंदर एक छोटा सा मूर्ति भी है।

इस तस्वीर में यह दिखाया जा रहा है की यह तीनों एक गड़ियाँ है जो की बैटरी के सहारे ते है।

इस तस्वीर में यह दिखाया जा रहा है यह एक बैंक की तस्वीर है इस बैंक का नाम यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया है।

शाखा बी.आर.बी. कॉलेज है। इस बैंक के आस-पास कई दिखाई दे रहे हैं।